इसमे बँक ऑफ महाराष्ट्र है बँक में जाने के लिये कुछ सिडिया भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

इसमे बिजली के तार टंगे हुए दिखाई दे रहे है बाहर कुछ सिडीया भी बनी हुई है।

इस चित्र मे एक बड़ासा शेड डला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे महारुद्र ऑटो सर्व्हिसेस --

इस चित्र में एक रिसेप्शन बना दिखाई दे रहा है जिसमे एक कम्प्युटर भी रखा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक महिंद्रा की गाड़ियोंका शोरूम बना दिखाई दे रहा है।